ईं तस्वीर मा जी हम देख सगदों कि यखा मा हमि एक झीलन दिखेण लगीं तखि झीलें कु पाणि हमतें हरा रंग कु दिखेण लग्युं।

ईं तस्वीर मा जी हम देख सगदों कि यखा मा हमि एक कूड़ुन दिखेण लग्युं जै कुड़ा फर हमि सीढ़ी लगायीं दिखेण लगीं तखि सामनि हमे वे कुड़ा कु बगीचन दिखेण लग्युं।

ईं तस्वीर मा जी हम देख सगदों कि यखा मा हमि एक झीलन दिखेण लगीं तीं झीलक किनारा हमि एक बड़ु सा फूलन दिखेण लग्युं।

गाडी और स्कूटी आ स्कूटी दिखेण लगीं सामनि हमि एक दुकाना दिखेण लगीं।

जीं दुकान का एंच एक बड़ु सा पोस्टरन लग्युं।

ईं तस्वीर मा जी हम देख सगदों कि यखा मा हमि एक मैदानन दिखेण लग्युं तै मैदान मा जी छकि सा कुछ छोटु-छोटु घान दिखेण लग्युं।

ईं तस्वीर मा जी हम देख सगदों ईं तस्वीर मा हमि एक जिला चिकित्सालय दिखेण लग्युं तैक भितर फणि हमि छकी सारी मशीन माशीन भी दिखेण लगीं एक बोर्डा लगायूं।

और घर मा जी हमि एक कार्टिन भिन दिखेण लगीं और घर का किनारा मा हमि एक रोडन दिखेण लगीं।

कुड़ुन दिखेण लग्युं जै कूड़ा मा जी हमि दिवालन दिखेण लगीं।